एक टेबल पे दो नमक का डिब्बा रखा हुआ है।

इसका बोर्ड का कलर रेड में है लाइटिंग में।

एक फोन पे बात कर रहे है एक साड़ी देख रहे है और एक दिखा रहे है।

कई सारे बाइकें हैं एक ऑटो है।

यह एक बैंक है। जिसका बोर्ड लिखा हुआ है। भारतीय स्टेट बैंक --

एक कोट पहना है व्यक्ति जिसका जैककोट का कलर सीमेंट कलर का है एक जैकेट पहना है जिसका कलर सीमेंट --

इसका मॉल का कलर ब्लैक एंड वाइट में है।